यह एक नदी का दृश्य है। नदी भारत में विभिन प्रकार की नदियां पाई जाती हवे । वह हिमालय पर्वत से निकल कर अ पूरे भारत में फैलती हैं।